इस तस्वीर में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैऔर उसके आस-पास बहुत सारे कुछ लोहे के यंत्र रखे हुए हैं। और यह कोई कारखाना-सा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ अंदर काम होता है।